और ये जगह चप्पल की दुकान --

यहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे शिक्षक होते हैं।

यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ियों को ठीक किया जाता है।

जिनमें की लोग एक्सरसाइज करते हैं।

घूमने के लिए इस नदी में इस नदी में घूमने में काफी अच्छा लगता है।

शादियाँ भी कराई जाती है।

बहुत अच्छी पिकअप होती है।

सुपौल का है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं।

चर्च है और यह चर्च काफी बड़ा है।

मजबूती से बनाया जा रहा है।

पेड़-पौधे लगे हैं जिसके कारण ये बागीचा --

यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बाल काटी जाती है।

काफी बड़े-बड़े चट्टान हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घुमने के लिए।

पढाई करने में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर है जो की --

सुपौल का बस स्टैंड है।

बुक स्टोर है और यहाँ पे --

शाम को अजान दी जाती है यहाँ पे --

अमीर घराने के बच्चें आते हैं पढ़ने के लिए।

बहुत ही बड़ा है इस होटल में बहोत सारी --

रहने के लिए यहाँ पे कमरे दिए जाते हैं रेंट पे।

और इस मैरिज हॉल में --